यहाँ सामने में एक खाली जगह दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो मिट्टी है वो रेड -रेड --

यहाँ पे पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। पहाड़ जो है यहाँ पे बोहत बड़ा पत्थर --

औड यहाँ पे रेड -रेड सब इतना बड़ा खा हुआ है। ऊपर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे --

सामने में एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है जिसपे रोयल --

सामने में रोड दिखाई दे रहा है और रोड के साइड में कुछ छोटे-छोटे --